लोहे का जाल वाला गेट लगा हुआ है।

यहां पे मुझे तालाब दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान है इसके बाहर एक काउंटर रखा हुआ है काउंटर में काफी सारा सामान पड़ा हुआ है।